यहाँ पर अंदर काफी सारे लोग बेठे हुए दिखाई दे रहे हैचर्च के बहार रेड कलर के स्टेंड पे काफी सारी मोमबत्तिया जलती हुयी भी दिख रही है।

यहां हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है जो एक मछुआरे की है।